इस तस्वीर में हम देख सकते है। एक बड़ी सी शानदार सी ईमार है। जो काले ग्रे और पिले से रंग की है। इस तस्वीर ये सा लग रहा है। जैसे ईमारत को बहुत सुर से खींचा गया है।